और कहीं-कहीं पे गुब्बारों से सजावट की गई है वहाँ पे कुछ औरते भी मौजूद हैं।

इस तस्वीर में एक नई बनी इमारत का दृश्य दिखाया गया है अभी उसकी नीव ही रखी गई है।